यहां पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ लोग स्विमिंग पूल में हैं यहां पर एक फ्लैग येलो कलर का लगा हुआ दिखाई दे रहा है स्लाइड के ऊपर ।

इस इमेज में एक यूनिवर्सिटी का गेट नजर आ रहा है जिसमें एक ब्लू कलर का गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि खुला हुआ है यहाँ पर एक आ खजूर का पेड़ भी आ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर कुछ-ऊ बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं थोड़ी ही दूर में एक्टिव खड़ी हुई है और थोड़ी ही दूर में रिक्शा भी खड़ा दिखाई दे रहा है इसके साइड में एक लेडिस जाते हुए दिखाई दे रही है।

ये पिच्चर एक पार्क की है जहाँ पर बहुत सारी स्लाइड्स नजर आ रही है यहाँ पर कुछ छोटे-छोटे से भी पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ झूले भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये इमेज एक रोड की है जहां पे कचड़ा गाढ़ी जाती हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर एक बाइक पे एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक व्यक्ति चलता हुआ दिखाई दे रहा है।